और बहोत ही अच्छी तरह से मतलब प्रापेट वे में सारा सामान रखा हुआ है।

हस्पताल का फोटो है जहां पे लोग अपने प्रतीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और मनोरंजन भी कर रहे हैं ऐसा ही लग रहा है।